चित्र में मुझे झरना का पानी सफेद दिख रहा है।

दिख रहा है चित्र में मुझे कई सारे पेड़ और दिख रहे हैं।

कई सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगे के दिखाई दे रही है और बिल्डिंग के सामने--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

और एक कांच दिखाई दे रहा है।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

चित्र में मुझे डस्ट दिखाई दे रही है और रोड दिख रही है।

चित्र में मुझे कुछ लड़कियां और लड़के गोल पे बैठे दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे सीलिंग पे चलती हुई लाइटे दिख रही है और एक टेबल और कुर्सी दिख रही हैं।

दिख रही है और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है चित्र में लाइट जलती दिख रही है।

चित्र में मुझे सरिया डली हुई छत पे दिख रही है और प्लास्टिक का पाइप दिख रहा हैं चित्र --

चित्र में मुझे कुछ आदमी खड़े हुए दिख रहे है।